इस इमेज में एक व्यक्ति व्हाइट --

यहां पर बहोत सारी हरियाली है।

यहां पर मरीज के लिए ब्लैक कलर का--

ये सभी गाजर खेत में पड़ी है।

यहां पर गोलमेज हैं यहां पर लड़ियां जग रही हैं।

इस इमेज में एक बैंक जैसा नजर आ रहा है।

यहां पर ए_सी भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

इस इमेज में एक केस्ट की शॉप नजर आ रही है।

ये व्यक्ति कार सही कर रहा है।

यहां पर बहुत बड़ा शेड बना हुआ है यहां पर पेपे भी लगी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे घास हैं।

एक बहोत बड़ा टेबल लगा हुआ है इस इमेज में छ चेयर है।

यहां पर मंदिर डेकोरेट किया हुआ है।